यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। समाने से एक हु तार जा लाइट का वायरिंग तार जा रहा है।

पीछे एक कार्टून बना हुआ है। दो चम्मच लिए हुए है लगे हुए हैं।